अंदर की ओर और भी बहुत सारी बाइकें वगेरह खड़ी हैं और कुछ लोग हैं जो अंदर की ओर खड़े हुए हैं।

और आगे एक बहोत बड़ा गार्डन है जिसमें छोटी-छोटी घास उगी हुई है और पेड़ लगे --

सामने कैलेंडर लगा हुआ है सरस्वती माता का और एक शीशा लगा हुआ है।

और स्काई व्हाइट करके येलो रंग की टी-शर्ट पहन के एक इंसान है जो कि आगे के ओर खड़ा हुआ है।

और दो लोग इस फोटो के अन्दर दिख रहे।

का बना हुआ है। एक अंटी है जो कि बाहर की ओर निकल के आ रही है। दो लड़की है जो कि आपस में बात करते हुए अन्दर की ओर जा रहीं --

और जो पहाड़ है इसके ऊपर बहुत सारे --

मस्जिद की फोटो है और मस्जिद की मीनार दिख रही है जिस पर स्पीकर हुए है।

सामने पोस्टर वैगरा लगे हुए हैं।

बोट है और ये काशी की घाट की फोटो है।

अअ लेबर्स के हाथ में अअ --

बाहर की ओर कमरे हैं। कुछ है स्पेलिंग की कुछ है

और यहाँ जितने भी पंडाल के लोग हैं उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है।

कंपैरेटिव फ्लाइट और पीछे के और पहाड़ वगैरह है।

गले में लाल रंग का झुम्बर लगा हुआ है और बीच में कोई लॉकेट --

व्यक्ति देखिये खड़ा हुआ है और सारे काम को देख रहा है।